बीच में रास्ता है बगल में।

इस तस्वीर में मुझे एक ब्लू टाइप और हल्का स्काई कलर का जिंस पे पहना हुआ हैं।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

रैक बने हुए है बहुत सारी रैक बने हुए हैं।

यह लगता है कि राइट साइड

और ऊपर आगे देखने पर कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं।